लेकिन पहाड़ बहोत सुंदर लग रहा है। बहोत ही सुंदर पहाड़ है और सुंदर देखने को --

साइकिल खड़ा है। स्कूटर खड़ा है। एक लेडीज भी दिख रही है। यहाँ --

और बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुंदर लग --

ये कहीं का स्कूल है। बहुत शुंदर स्कूल है। यहाँ बहुत भारी पेड़ है।

बहोत सुंदर है। बहोत देखने में सुंदर है लेकिन कुछ लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।

है। बहोत ही अच्छा से दिख रहा है। बहोत लगा हुआ है। बहोत ही सुंदर जगह है। देखने में बहोत सुंदर लग रहा है।